और एक सतल सी दिखाई दी रही है दुकान --

सूर्य भी दिखाई दे रहे है ऊपर बदल भी दिखाई दे रहे है हरा हरा ग्राउंड भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में मुझे कुछ फेक्ट्री सी दिखाई दे रही है उसमे--